यहाँ पर हमें काफी बड़ा सारा एक मंदिर नजर आ रहा है जिसके आस-पास काफी सारे हाउस हमें दिख रहे हैं एंड वॉल हमें नजर आ रही है और इस मंदिर का कलर व्हाइट है वॉल कलर भी वाइट है।